सिंचाई के काम किया जाता है इस नदी का पानी से पटावन का काम किया जाता है यहाँ पर तरह-तरह के मछली भी है यहाँ पर एक बोट चल रहा एक जहाज भी चल रहा है।

यहाँ पर बहुत से आदमी दाढ़ी-बाल कटवाने आते है। यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ है यहाँ पर एक नाई भी रहते है। वो दाढ़ी-बाल काटते--

यहाँ पर बहुत से आदमी भी है। यह आदमी गाड़ी चढ़ने के लिए आए है यहाँ पे बहुत से गाड़िया ते घुसी है।

यह बस एक जगह से दूसरे जगह जाती है यह भाड़े में चलाया जाता है।

यहाँ पर टिकट लिया जाता --

तो यहाँ पर बच्चे घूमने भी आते हैं इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े घर भी हैं ।